इस चित्र में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है खुला आसमान है।

और आ बहोत सारे आदमी हैं एक लड़का है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पह---